और वह मंदिर बहोत ही अच्छे से सजाया गया है हर तरफ अच्छे से स्तम्भ को गाड़े गए है इसके नीचे मे सीढी भी बनी हुई है।

यहाँ पे कुछ लोग इधर-उधर जाते नजर आ रहे हैं।

और बीच में कुछ गड्ढा जैसा दिखाई दे रहा है ऊपर में कुछ शटर जैसे दिखाई दे --

यहाँ पे दो व्यक्ति सल्फ़े लेते हुए नज़र आ रहै है।

यहाँ पे एक होटल दिखाई दे रहा है जोकी बहोत ही बड़ा दिखाई दे रहा है ।